पिच तैयार किया गया है। यहाँ पर फील्डिंग के लिए --

यह एक बहोत ही खूबसूरत होटल है।

अभी खुला हुआ है। इस मस्जिद के ऊपर हरे कलर का --

इस फैक्ट्री में आज ही पूजा हुआ है।

यह देख रहा है की यह मजदूर --

यह एक जीला सेवायोजन अधिकारी कारलाये है।